और बिली पर मतलब वायर वायर भी है और बहोत सारी सीढ़ियां है सीढ़ी --

दुकान में हर तरह के हर बीमारी का इलाज किया जाता है।

और इसका जो गया हैं उसे ब्लू कलर का है और पीला कलर का भी बना हुआ है वाइट कलर में है।

और व चार पांच मंजिल तो होगी ही।

यहाँ एक मकान है मकान --

जो की और आगे कैंपस है कैंपस में और फिर ये लाल और उजाला कलर से किया गया हुआ है।

जोकि हरा रंग का है और हर कलर में है।